यहां पर एक बतक है और जो की वो पानी में चल रही है ब्लेक कलर की बतक है और आ यहां पर आ ग्रास भी है घास भी--

और आवूट साईड भी अ-अ-अ मतलब प्लेट्स रखी हुई हैं एक टेबल पर --

यहां पर एक गार्डन टाईप है जो की यहां पर चेयर रखी हुई है बेठने के लिए और एक डस्टबिन रखा हुआ है ग्रीन कलर का --